जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं जैसे कि मैं देख पा रही मो --

बेलन का रंग नारंगी और सफेद रंग का हैं जैसे की मैं देख पा रही हूँ साम --

यह एक चाय स्टाल है जैसे कि मैं देख पा रही हूं सामने में एक आदमी खड़ा है ।

जो कुर्ता पेहना है ग्रीन कलर का और एक पैजामा पेहना है वाइट कलर का।

आदमी हैं जैसे की मैं देख पा रही हूँ एक साइड के आदमी ने --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह एक बहुत बड़ा सा गार्डन है जैसा कि मैं देख पा रही हूँ --

इस गार्डन में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल लगाए गए हैं कि--

यहां पर बहुत सारे स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं जो रंगोली बना रहे हैं रंगोली में अबीर का रंग--

लाल और हरा और सफेद और बैंगनी रंग का है जैसे कि मैं देख पा रही हूं।

जैसे कि में देख पा रही हूँ दिवार का रंग सफेद रंग का है और यहाँ पर स्टार बनाया हुआ है और वो बहुत ही खुबसूरत सा लग रहा है जैसे कि --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यह एक सुबह का समय है जैसे कि मैं देख पा रही--

टेबल और चेयर में बच्चियां बैठी हुई हैं जैसा की मैं देख पा रही हूँ --

ईहा पर एक बैंक है जैसा कि में देख पा रही हूँ इस बैंक का नाम स्टेट बैंक ए_टी_एम है।

बहोत सारे लोग खड़े हैं और बातचीत कर रहे हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूं।

में एक रोड हैं जैसे की मैं देख पा रही हूँ इस साइड बी एक रोड हैं --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यह एक शाम का समय है इसमें सूरज डूब रहा और सूरज बहुत --

ग्राउंड में हल्के फुल्के हरे भरे घास है और कुछ सूखे घास हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूं।

एक जग रखा हुआ है जैसे कि मैं देख पा रही हूं।

जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक सिंघासन रखा हुआ हैं जिसका --

भरी हुई है यहां पे तरह-तरह के सामान रखे हुए सामने के डब्बे में बादाम अखरोट आदि --

औरत बैठी हैं जो हारमोनियम बजा रही हैं और वो गुलाबी कलर का साड़ी पेहनी हैं --

लिए हुए हैं जहां से सीमेंट ले जा रहे हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक हार्डवेयर की दुकान है जैसा कि मैं देख पा रही हूं।

सामान रखे हुए हैं जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ सामने में एक आदमी बैठा हुआ हैं --